मिलते हैं यहाँ बहुत सारे लोग --

खेल रहे है स्कूल बस भी लगी हुई है यह बहुत बडा --

हैं यह मह्जीब बहुत ही छोटे हैं --